एक हात मे मास्क दिखाई दे रहा है। हरी घने दिखाई दे रही है। पौधे दिखाई दे रहे है। यह पथर बिछी हुई दिखाई दे रहे है। कुछ पथर पड़े हुए दिखाई दे रहे है।

लिखा पीछे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमे नीले कलर का पड़दा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।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

लिखा बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है तस्वीरे दिखाई दे रही है पे लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

अहम यह जी एक दुकान दिखाई दे रही है जिसपे कुर्सिया लगी हुई दिखाई दे रही है इस पर एक लड़की बैठी हुई दिखाई दे रही है हाथ मे फोन दिखाई दे रहा है।